इस इमेज में दो मूर्तियाँ दिख रही है इसमें से एक मूर्ति की पीठ पे दूसरा इंसान चढ़ा हुआ हैं ।

ये बच्चे पीछे दिवार के साथ टिके हुए है जिस दिवार के साथ जे टिके है उसका कलर रेड है और उसके ऊपर दो खिड़कियाँ लगी हुई है।

राइट साइड में एक वाइट कलर का बोर्ड दिख रहा है और उसके पीछे दीवार के ऊपर चिट लगा हुआ है नॉट --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

सामने गैलरी में कुछ लोग खड़े हो गये है और इसके लेफ्ट साइड में बाहर एक बड़ा-सा --

के ऊपर दो-तीन मंजीले है लोग भी खड़े हुए हैं।

इसके बाल दिख रहे है जिसके बाल ब्लैक कलर के है और सामने शीशे की तरफ देख रही हैं ।